यह एक बेकरी है। यह बेकरी हारबस्ट बेकरी के नाम से जाने जाते हैं। यह बेकरी बहुत ही बड़े फील्ड में है। यहाँ बहुत सारे लोग इस बेकरी में काम करते हैं। यहाँ के मैनेजर बहुत ही अच्छे हे।

एक मंडप बनाया गया है दूल्हे-दुल्हन बैठी हुई है पंडित पंडित जी शादी करवा रहे हैं यह --

यह एक बिल्डिंग है यह बिल्डिंग बहुत ही बड़े है इस बिल्डिंग के बाहर एक बोलेरो गाड़ी खड़ी है यहाँ के लोग इस बोलेरो से कहीं जाने वाले है यह बिल्डिंग में बहुत अच्छे-अच्छे आदमी रहते हैं ।

यह एक फैक्टरी है यह फैक्टरी एलबेस्टर से बनी हुई है इस फैक्टरी में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं इस फैक्टरी के --

यह एक नदी है यह नदी काफी बड़े हैं यहाँ बहुत --